और मछली बेचने वाला जैकिट पहना हुआ है काला कलर का--

ये पूजा का पंडाल है दशहरा का है कुछ लोग बैठे हुए है एक बंदा कंबल ओढ़े के बैठा हुआ है बहुत अच्छा से स स सजावट की हुई है।

ये अ छठी माँ का पूजा हो रहा है और इसमें बहुत सारे श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे है।

और यह पीले कलर की बिल्डिग है आसपास में बहुत सारे पेड़ है आसमान में बादल छाए हुए है।

यह मेरेज होल का अंदर का है और सामने कारपेट बिछा हुआ है पिलर को भि अच्छे सजाया गया है।

और रेलिंग बनी हुई है निचे एक दरवाज़ा है जोकि पीले ए ब्लू कलर वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है दो खिड़कियां इसमें है और दिवार तो पलस्टर है बट उसमे पेंटिंग नही हुई है।

किनारे बहुत सारे पेड़ है बिच में पानी है।

रेड हल रेड का लाइटिंग है और इसका गार्डन में भी लाइट --

नदी के उअस पार पहाड़ है और बादल दिखई दे रहा है और आसमान में कुछ हिस्सा स्काई --